और दूसरी तरफ एक आदमी एक स्कूटी से कुछ फल लेते हुए नजर आ रहा है।

इस व्यक्ति के पीछे दो क्रॉस भी नजर आ रहे हैं।

और वही एक बैंक भी है आई_डी_एफ_सी फर्स्ट बैंक ।

ये जस्ट नीचे लिखा है एक्सिस बैंक ।

एक सामने पीले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

उसके बीच में एक कटोरी में हरे कलर की चटनी भी रखी हुई है।

सामने कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

वहीं सामने एक गाड़ी और स्कूटी भी खड़ी हुई है।

शॉप में कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहीं कुर्सी के पास एक डेस्क पे एक प्रिंटर रखा हुआ है और वहीं एक पास बॉक्स भी रखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पर बहुत सारे पेन और पेंसिल भी रखे हुए हैं।

दूसरे तरफ एक आदमी मास्क लगाए हुए खड़ा हुआ है।

इसमें बहोत से लोग भी बैठे हुए हैं।

इसके चारों ओर लोहे की रेलिंग भी लगी हुई हैं।

सोफों के पास ही एक मेज़ में भी बहुत सी साड़ियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

सड़क पर एक टेंपो और एक रिक्शा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

वहीं सीढ़ियों के पास एक गमले में फूलों का पौधा भी लगा हुआ है।

सामने एक बड़ा जनरेटर भी रखा हुआ है और कुछ तख्त भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है नो वेंडिंग जोन ।